और एक बड़ा-बड़ा भी पेड़ जैसे दिखाई दे रहे हैं इधर |

बस खड़ी है पीला कलर की उस साइड में भी पाँच बसें खड़ी दिखाई दे रही है वहाँ पे एक बड़ा-सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है वाइट और --

यहाँ सामने में कार बलोरे दिखाई दे रहा है वाइट कलर का इधर साइड में कुछ ईटें का टुकड़ा भी दिखाई दे रहा है।